यहा पर एक बहुत ही बड़ा-सा बिल्डिंग दिख रहा है इसमे बहुत सारे खिड़किया बनी हुई है।

साइड मे रस्ता बना है जो मिट्टी का बना हुआ है और बहुत सारी कुछ हरी-हरी घासे दिख रही है।

यहा पर एक बहुत बड़ा-सा मंदिर दिख रहा है जिसमे कुछ लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन से बनाया हुआ है।

और इसके पीछे बहुत ही बड़ा-बड़ा दो पत्थर दिख रहा है जो काला-काला सा दिख रहा है।

यहाँ पर एक बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है म्म जिसको पैंट किया गया है नीचे में उसके बड़ा बड़ा सा--

ऊपर में व्हाइट कलर का बहोत सारा लाइट लगा हुआ है सामने एक घड़ी भी लगा हुआ है